फोटो में नाइट दिखाई दे रही है मुझे इस--

दरवाजा दिखाई दे रहा है।

चार बच्चे दिखाई दे रहे हैं।